लड़के तारे भी दिख रहे है बहु कुछ पानी भी दिख रहा है बहुत कुछ पानी भी दिख रहा है बहुत कुछ पानी नीला- सा दिख रह है बहुत कुछ मतलब ग्राउन्ड टाइप का सीन भी दिख रहा है --